इस दुकान में हर तरह के सामान वामान रखे हुए दिखाई दे रहे एक इंसान उस समान को बेचते हुए दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर लाइट --

कई सारे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे फूल पौधे--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक पेट्रोल पंप बना हुआ दिखाई दे इस पेट्रोल पंप में--

एक इंसान पेट्रोल भरता हुआ दिखाई दे इन सब के गाड़ीयों मे पेट्रोल भरता हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहरी गाड़ियां मोटर खड़ी दिखाई दे रही है एक इंसान--

मुझे इस फोटो में एच_एच दशमलव एच मोबाइल शॉप --

रिपेयरिंग सेंटर लिखा हुआ दिखाई दिया और नीचे को श्री राधे गिफ्ट की--

सामने घर के तरफ पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

वाशिंग मशीन पाउडर है।

मुझे इस फोटो मे सामने की ओर एक किराने मेडिकल दिखाई दे जिसमे के साथ दवाइयाँ रखी है शिशियां क बहुत शिशियां--

सामने की ओर दीवार में रंग-बिरंगे बैलून लगाये गये है दीवार पर व्हाइट कलर की पलाई वोलाई लगायी गयी है।

इसमें एक नीम का झाड़ लगाओ जो नीम का झड़ने की जाते हैं दिखाइए--

निधि को डाल से लगाई गई हैं और फिर एक लाइट वाइट कलर की लाइट जलती दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सामने कई सारी रेल की पटरियां बिछी हुई दिखाई दे रहीं--

मुझे इस फोटो में सामने क्यों पी_बी_ई --

पेट्रोल पंप बने दो दो से तीन पेट्रोल पंप बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक घर बने हैं इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा।

एल_आई_सी स्कूल कटनी यम_पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा--